कुछ मट्टी का ढेर लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं।

कुछ नाली खुदी हुई है जो दिखाई दे रही कुछ मशीनें रखी है जो दिखाई दे रही हैं ईंटें रखी हुई हैं जो दिख रही हैं।

यहाँ पर एक पर्वत दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे है कुछ प्--

कुछ खंभे गड़े हुए है लोहे के पाइप जो दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ लगे हुए है जो दिख रहे है।

यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसकी दिवालॊ पर कुछ डिजाइन बनी हुई है मूर्तियां बनी हुई है जो दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के सामने एक ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड में कुछ हरियाली लगी हुई है जो दिख रही है पेड़ लगे हुए है वेह दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर कुछ पेड़ लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर पत्थर दिखाई दे रहे है छोटे बड़े सभी--